इस दुकान का नाम गूगल बुक सेंटर एंड टेलीकॉम है।

यहाँ एक बाइक लगी हुई है | एक दूकान खुला हुआ है जिसके अंदर लैपटॉप कंप्यूटर रखा हुआ है और एक दुकान बंद है जिसमे दो ताला लगा हुआ है ।